और बाहर खाली सड़क पड़ी है।

जिन में कुछ शीशों की खिड़की वाली हैं।

इसमें बहुत सारे जंगले बने हुए हैं।

यह एक ऑफिस है जिसमें कुछ काउंटर बने हुए हैं।